पथर है पथर के नीचे नदी है नदी मे पानी है पानी के सफेद कलर का है और गनदा भी है।

काफी सारे लोग बैठे हुए है जो हाथ आगे करे हुए है सफेद कलर की शर्ट पेन्ट पहने हुए है।

यहाँ पे एक रास्ता है रास्ते मे एक ट्रक खाडा हुआ है लोहे का कैन रखा हुआ जिसमे पेट्रोल है।

काफी सारे समान रखे हुए है जो कपड़े के हैं सामने साइड एक काउन्टर मे झूल रहा है।

बगल मे कुछ पीले कलर का म-मसीन रखा हुआ है जो जनरेटर टाइप का लग उसके ऊपर लाल कलर का है।

एक दुकान है दुकान काफी बड़ा है उसके सामने काफी सारा समान रखा हुई है सामने डब्बे मे रखे है तेल है और पानी भी रखा हुआ है।

जो बड़े बड़े भी है नीचे साइड उसका भीत मे है सामने साइड पहाड़ है पहाड़ काफी ऊंचे ऊंचे है उसमे काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुवे है जो हरे भरे है।